लगे हुए है और नदी के बिच मे एक बड़ा सा पुल है जिसमे कार और टेक्सी इत्यादि चल रही है और बाइक भी चल रही है।

सामने हमे एक नदी दिखाई दे रही है नदी के बीच मे बोहत बड़ा पूल बना हुआ है यह पूल काफी विशाल है तथा नदी भी बहुट विशाल है और इस नदी मे एक बोट है जो चला रहा है।

सामने में एक रिक्शा दिखाई दे रही है जो क लाल कलर की है और बहुत सारी इ रिक्शा खड़ी है ये बिलिंग के अंदर ओर ये बिल्डिंग्स का कलर सफ़ेद।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

सामने एक बड़ी सी नदी है नदी के बीच में एक बड़ा सा पुल बना हुआ है जो की बहुत ही चौड़ा दिख रही--

है नदी के आस-पास कई सारे पेड़ लगे हुए हैं और कई सारे पत्थर भी है लगे हैं और नदी बहुत गहरा दिखाई दे रहा है और पुल भी बहुत गहरा है और बहुत बड़ा है।

इस नदी के बीच से एक पुल बनाया गया है और दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ये पुल्ल काफी बड़ा है और काफी लम्बा है और काफी चौड़ा है ।

सामने हमें ई रिक्शा दिखाई दे रहा है जिसका कलर पीले वह नीले कलर पेंटिंग से पेंट है जो की एक रोड पर खड़ी हुई है।

सामने हमें एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इस बिल्डिंग के बहार एक कार खड़ी है और दो बाइक खड़ी है वाईट एक बाईक के साथ एक व्यक्ति भी खड़ा है ।

बिल्डिंग के सामने धजा रोह का स्टेज भी बना हुआ है जो की वाईट कलर की पेंटिंग से पेंट है ।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

सामने हमें एक बड़ी सी झरना दिखाई दे रही है यह झरने में बोहोत बड़ा विशाल झरना दिखाई दे रहा है।